यह एक प्लेग्राउंड है जिसमे बच्चे खेल रहे है हरा हरा मैदान है हरा हरा घास है और बहुत सी चीजे है अब में क्या ही बोलू इसके बारे मे बहुत अच्छी लग रही है देखने मे यह भी।

गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई हैं । साइकिले भी है कुछ कुछ साईकिल और गाड़ी उधर भी हैं ।

नीचे में कुछ सादी है वगैरा सादी ही लग रही है यह होटल हमारे फर्जगंज में है।

पिअर पीला रंग का मकान है । पीला और लाल --

पहाड़ी इलाका लगता हैं इधर भी घर है मकान है उगता हुआ सूरज हैं।

क्युकि एक बडा भी मुर्तिया साइड मे रखा गया --